यह मैं एक पिक देख पा रहा हूं जो की एक शादी समारोह की लग रही है जिसमें कई --

ये फोटो मैं देख पा रहा हूं जो की एक ग्रामीण इला एरिया लग रहा है जिसमें --

तीन बाइक खड़ी है और एक अज्ञात व्यक्ति खड़ा है ए_सी लगी हुई है हेयर सैलून की दुकान लग रही है।

इस फोटो में मैं देख पा रहा हूं कि गुब्बारों से सजावट की गई है।

की कई लेडीजे और जेंट्स आदमी बैठे हैं जो कि एक आस्था का स्थल है मंदिर है जो कि --

मैं ये फोटो देख पा रहा हूं जो कि एक सर्कल है उसे आवा जावी वाहन कर रहे हैं एक व्हाइट कलर की --

इसके रेलवे स्टेशन के बाहर एक शॉप भी नजर आ रही है जिसमें नमकीन मिलती है और बाहर की तरफ कुर्सियां लगाई गई है।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं इस इसमें होटल नजर आ रही है और बाहर की तरफ --

इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है ये एक पार्क ग्राउंड खेलने के लिए है जिसमें कई --

फूड टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो की साइकिल के टायरों से बनाई गई है और इस --